बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

जहाँ सामने एक पोल लगा हुआ है जिसको सफेद रंग किया हुआ है।

और उनके पीछे एक बड़ी-सी।

एक हाथ में उनके कुंडल और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं।

जमीन पे भगवान जी कि मूर्ति बनाकर --

और दुकान में महिलाओं के लिए जो-जो सामग्री मिलती हैं।

जहाँ पे दो व्यक्ति पैदल जा रहें हैं।

यह एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है।

दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगीं हुई है।

मूर्तियों को ऐसे रखा हुआ है जैसे की येह --